कमरे में दो तखत पड़े हुए है।

इस फोटो में एक कपड़ों की दुकान दिखाई गई है।

दुकान का नाम द चेन्नई शिल्क्स है।

रोड पर बहुत सारी गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं।

कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

पीछे एक बाउंड्री भी है।

सामने की तरफ एक बस भी खड़ी है।

सामने की तरफ बैठने के लिए सोफा रखें हुए हैं।

दूसरा मकेनिक इंजन को ऊपर उठा रहा है।

कुछ लोग मॉल में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं।

के सामने एक रास्ता भी है।

टमाटर के पेड़ हरे भरे हैं।

दो लोग टमाटर के पेड़ में दवा लगा रहे हैं।

इस फोटो में एक शॉपिंग मॉल दिखाया गया है।

सामने की तरफ एक रास्ता भी दिख रहा है।